यख मा जी एक सफ़ेद रंग की मूर्ति छा यख मा जी जू छ य भगवान जी की मूर्ति छा।

यख पिछाड़ी मा जी कुछ और मूर्ति कर छन बणी दीवाल मा जी छन लगीं दीवाल मा जी एक नारंगी रंग या फेस रंग होयुं यख मा जी स्लेटी रंग भी छ होयुं यख मा जी एक लाइट छन लगीं।

यख मा जी एक मैदान करा यख मा जी कई सारी गाड़ी छन लगीं यख मा जी कुछ गाड़ी उंडी फंडी छन ओणि यख मा जी एक-दुई बाइक साइड फण छन लगीं एक आदमी छ यखम दिखेणु यखम दुई नीला ड्रम छन दिखेणा।